दुकान के सामने एक पोस्टर है जिस पर लिखा है हमारे यहां कोट पेंट शेरवानी मोदी जैकेट इंडो वेस्टर्न और बास्केट बनाई जाती है।

पीछे की तरफ एक फिटिंग है फिटिंग में बहुत सारे कपड़े पैक रखे हुए हैं।

कुछ लोग एक पर्दे के नीचे बैठे है जबकि कुछ लोग पूर्ण रूप से प्राकृतिक दृश्य का नजारा लेते हुए दिखाई दे रहे है।

सामने एक इमारत दिखाई दे रही है जिसे कुछ वृक्षों के हरियाली से छुपा दिया गया है।

यहां पर स्कैनर लगा है जिससे हम इनको रुपए पे कर सकते हैं।

मशीनरी के ऊपर मिको नाम का एक बोर्ड लगा है एक डिजिटल डिस्प्ले लगा है।

दृश्य में एक पोस्टर लगा है जिस पर श्री श्री एक सौ आठ श्री सिद्धवीर हनुमान मंदिर ललितपुर लिखा है।